यहां मस्जिद के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था भी है।

जो ऑफिस मध्य प्रदेश पुलिस का दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि यहां पर कुछ पुलिस क्रमी हैं।

ऐसा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए यह हमेशा के लिए बेकार होता है क्योंकि लोगों को खाना भी नहीं नसीब होता है।

मुझे लगता है कि यह दृश्य काफी सुंदर और काफी प्यारा है।

जो कि एक बहुत बड़ी कपड़ों की शॉप है एक ब्रांडेड कप कपड़ों की दुकान है।

और पानी ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह एक कैफे नजर आ रहा है होटल टाइप का जहां टेबल कुर्सी लगाई गई है।

मुझे लगता है कि यह डॉक्टर लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर होगा जो की दिखाया गया है।

यहां पर एक गार्डन के बीच में एक बोर्ड लगाया गया है जहां पर कुछ लिखा गया है।